में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।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

जिसमें बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।

इसमे बहोत सारे गेट लगे हुए है।

में एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे है।

सामने दो मंदिर दिखाई दे रहा है।

फ्रिज के ऊपर दो बोतलें रखी हुई दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सी दिखाई दे रहा है उसके बगल में बहुत सारे टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे सामान मैगी दिखाई दे रहे हैं बिस्किट दिखाई दे रहे हैं।

गुंबज लाल कलर का है गुंबज के ऊपर एक त्रिशूल लगा हुआ है।

सामने एक कुर्सी दिखाई दे रहा है।

एक हरे कलर के एक भूरे कलर के है।

इसमें लाइटें जल रही है।

गेट में बहुत सारे फूलों के सजावट किए गए हैं।

छोटे छोटे फूल लगाए गए हैं नीचे लाइट लगाई गए है।

सामने एक हरा बोतल दिखाई दे रहा है।

पंखा दिखाई दे रहा है।

मछली का फोटो बना हुआ दिख र--

उसमें बहुत सारे कुरकुरे रखें हुए हैं एक प्लास्टिक का डब्बा है।

सामने दो तीन कार्टून रखे हुए--

सामने एक ढाबा दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

में एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

जिसमे बहोत सारे मूर्ति के फोटो है।

लेडिस दिखाई दे रही है जो हरी कलर की साड़ी पहनी है।

एक नींबू दिखाई दे रहा है।

सामने एक कैंटीन जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे प्लेटें रखे हुए हैं मग रखे हुए हैं चम्मच रखे हुए --

दो मग दिखाई दे रहे हैं उसके बगल में दो सफेद रंग की कुर्सियां दिखाई दे रही है।

बगल में बहुत सारे डिजाइने दिया गया हैं।

सामने दो बाइक खड़ा है।

सामने पीले गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है उसके अंदर दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर एक करकट दिखाई दे रहा है।

बगल में और एक दिवाली दिखाई दे रहा है जो पीले कलर का है।

बीच में एक डिप ढीप दिख रहा है जिसके उपर मिट्टी है छोटा छोटा पत्थल दिखाई दे रहे--

सामने दो बड़े बड़े रूम दिखाई दे रहे हैं।

आदमी दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे दुकान दिखाई दे रहे हैं।